अ बहुत सारी मछलियां इसमें ए --

बोतल लिए है और पीछे में पहाड़ दिख रहा है पत्थल बहुत बड़ा।

और रेल का डब्बा जो है वो पीला कलर में है और सामने में जो --

यहाँ सामने में एक अजीब सा --

है यहाँ पे और पीछे में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है नारियल के पेड़ जैसा बहुत बड़ा है।

और पीछे में कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे।

कुछ घर भी है यहाँ पे और पानी --